यहाँ पे एक एक मेज है जिसके ऊपर बैग रखा गया है दो बाइक है एक दुकान भी है उधर साइड में ये बस --

हरियाली भी है। सूरज डूबा रहा है। बेहद खूबसूरत लग रहा है।

ये गेट नंबर फोर पे यहाँ पे लिखा है प्लास्टिक इज नॉट अल्लोवेड --

ये दरवाजे हैं जो पीले ऑरेंज कलर के हैं।

ये ऊपर सीढ़यों पर खड़ा हुआ है जो बहुत अच्छा टोपी लगाया हुआ है स्वेटर सफेद कलर का पहना हुआ है --

उधर के मुड़ी खड़ा करके खड़ा हुआ है। अब हम उनके बारे मे क्या बताए बेहद खुबसूरत लग रहे है यार।

उसमे एक ठो लड़की खरी है। जय सम्राट कॉस्मेटिक शॉप । हर --

ये एक ठो मॉल है जो बेहद खूबसूरत मॉल है विशाल मेगा मार्ट --

एक ड्रम है जिसमे पानी भर के रखा हुआ है एक और आदमी है जो ताक रहा है उधर के साइड ।

यहाँ पे चेतावनी भी लिखी हुई है जो बेहद खूबसूरत लग रहा है। यहाँ जो गार्ड है खिड़की --

ये फ्लाई जेट है। जहां पे झगड़े फ्लाई जेट है जो बेहद खुबसूरत लग रहे हैं तीन चार ठो फ्लाई जेट । यहां पे दो आदमी भी खड़े हुए हैं।

यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो आर्टिकल्स बना रहे हैं यहां पे एक मिस है जो खड़ी हुई है उधर भी एक मिस हैं।

खिड़की है यहां पे। खिडकियां जो बेहद खुबसूरत लग रही --

कदर पे हरयाली हुई है।

हरयाली इधर छाई हुई है एक ब एक ठो आदमी है जो बच्चे को ले कर जा रहा है।

यहाँ पे लाइट का भी --

यहाँ पे घोड़े वोढे सब कुछ पुतला है घोड़ों का जो बोहोत अच्छा लग रहा है।

यहाँ पे एक लड़की है जो वीडियो बना रही है। शायद यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी आया है।